स्कूले में कोनो कार्यक्रम होता टे कुर्सी मेज लागल बाटे और घर के लोगके बुलावल बाटे सब घर के लोग आइल बाटे और लईका फईका येमे सब बान --